यहां पर बहुत लोग पूजा पाठ कर रहे हैं।

यहां पर एक शॉप है और वहां पर कु--

और कुछ बेसिंग के आइटम यहां पर मिल जाते हैं।

मैरिजेस एंड पार्टीज ऑर्डर भी लिए जाते हैं।

यहां पर बहोत सारे लड़कियां हैं और यहां पर योगा कर रहे हैं और सभी लोगों ने मास्क पेहने हुएं हैं।

यहां पर एक विद्यालय है और ये बहुत बड़ा है।

नीले रंग का कलर लगाया हुआ हैं हर गेट के अंदर बहुत सारे पेड़ हैं।

ये एक कंपनी है और कंपनी में--

बहोत सारे मशीनस भी है कुछ लोग मशीन भी चला रहे हैं।

इंटरनेट ईमेल आईआरसीटीसी .

ये एक बहुत बढ़िया सा फंक्शन हॉल है।

और यहां पर पुष्पक नाम का एक रिक्शा है।

और यहां पर हरे रंग की बिल्डिंग है।

और कुछ लोग रोड के ऊपर खड़े हुए हैं।

एक नीले रंग की हैं एक गुलेबी रंग--

यहां पर बहोत सारे पेड़ों के पेड़ हैं।

लिंगुअल इंग्लिश स्कूल का क्लासेस का बैनर है यहां पर स्पोकन इंग्लिश सिखाई जाती है।

ये एक रीडिंग रूम है वहां पर कुछ लोग--

और यहां पर बहुत सारे कुर्सियां हैं ये एक जिम --

क्लासेस हैं यहां पर जिम के बहुत सारे मशीन्स हैं।

ये एक बैट का शॉप हैं यहां पर बहुत सारे--

बैट्स है बहुत सारे अलग अलग--